जिसे ब्लू और वाइट कलर से पेंट किया गया है।

इस पिक्चर पर हमें एक सुंदर सी व्यू दिखाया गया है।

उधर फ्लैग हवा में उड़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं इस जगह को रेड कलर से पेंट किया गया है।

इस फोटो पर हमें एक रूम दिखाया गया है। यहां पर एक बहुत बड़ा बैग भी हमें देखने को मिल रहे हैं।

इस फोटो पर हमें एक दुकान दिखाया गया है यहां पर हमें बहुत सारे बुक्स में देखने को मिल रहे हैं।

इस जगह में आदमी कोई बैठे और कोई खड़े हमें देखने को मिल रहे है।

यहां में हमे बहोत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं।

घर देखने को मिल रहा है बेंबो से बना बना और यहां पर हमें पानी देखने को मिल रहा है।

जहां पर बहुत सारे शख्स में देखने को मिल रहे हैं।

इस पिक्चर पर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है यहां ऊपर में हमें देखने को मिल रहा है होम फूड रेस्टोरेंट ऐसा लिखता हुआ।

और इस जगह को रेड और अलग कलर से पेंट किया गया है कर्टन भी हमें देखने को मिल रहा है।

को मिल रहे है यहां एक का काला वाला चेयर भी हमे देखने को मिल रहा--

सारे जूस की बॉटल हमें देखने को मिल रहे हैं।

यहां दो शख्स हमें देखने को मिल रहे हैं।

और इसे यहां छुते हुए एक इंसान भी हमे देखने को मिल रहे हैं।

व्हाइट ऑफ़ व्हाइट कलर के हमें बहुत सारे कर्टन देखने को मिल रहे हैं।

दूर में बहुत सारे बड़े बड़े हमें पेड़ देखने को मिल रहे है।